बहोत ही शानदार इस समुद्र के लहरो के किनारे एक शिप है जो बहुत ही अच्छा लुक है उसके बाजू में एक छोटा सा बोट है।